यह मंदिर की फ़ोटो लग रही है। यहाँ पे औरते बैठके पूजा करती हैं।

ये एक पारक की फोटो है। पारक में लोग जोगिंग करने जाते हैं। मौसम --

दो बैंकों के बोर्ड लगे हुए हैं एक्सिस बैंक और आंध्र बैंक का --

इसमें एक लड़की लाल सूट पहने हुए --

खड़े भी हैं जो प्रकृति का आनंद ले रहे --

इसकी डेकोरेशन भी बहोत अच्छी है यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी दिखाई दे रही हैं और एक शॉपकीपर भी।

अंदर मेज वगैरा लगे हुए हैं। खुला ग्राउंड है।

और यहाँ का नजारा बोहोत अच्छा दिख रहा है।